यह एक पहाड़ी इलाका है चारों तरफ पहाड़ है बीच में नदी है।

यह एक वर्क शॉप है। यह इस वर्क शॉप के ऊपर--

यह खिलौने की दुकान है यहां पर बहुत सारे खिलौने हैं।

पीछे एक आधी अधूरी बिल्डिंग है।

कुछ बड़ी गाड़िया है कुछ छोटी गाड़िया है स्कूटी मोटरसाइकल --

एक खंभा है चारों तरफ हरियाली है।

यह किसी घर की छत है छत पर बेकार समान पड़ा हुआ है।

सभी टेबुल और कुर्सियां खाली है।

ये एक पुरानी बिल्डिंग है इस बिल्डिंग का रंग सफेद है।

यह एक बड़ा सा हॉल है इस हॉल में--

भैया एक वर्कशॉप है यहां पर कई गाड़ियां खड़ी है एक गाड़ी बहोत बुरी स्थिति में है।

पीछे सफेद रंग की बिल्डिंग है एक गाड़ी खड़ी है जिसका दरवाजा खुला है और एक आदमी--

ए_टी_एम लिखा है बाहर दो लोग खड़े हुवे हैं।

यह एक टेबल है इस टेबल पर--

यह एक दुकान है इस दुकान में बहुत ही खूबसूरत सोफा सेट रखे हुए हैं।

एक बड़ा सोफ़ा है उसके साथ दो छोटे सोफे है।